जिससे हम यह कह सकते हैं कि यह पुस्तक की दुकान गोरखपुर के आजाद चौक की है।

राज मोटरसाइकिल्स संजय ऑटो सर्विस सेंटर यह दुकान एक --

राज्यकीय बोध समरहाला गोरख्पुर के मैंन गेट की है एवं हम देख सकते है की गेट के भीतर जाते ही कतार में --

जैसा कि हम देख सकते हैं कि जमीन पर पानी गिरा है तो यह हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह शायद बारिश के मौसम की तस्वीर है।

सामने हरी भरी झाड़ियां एवं हाथ में एक फूल यह तस्वीर देख के हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह तस्वीर किसी जंगल की है।

एक क्रम में खड़े हुए लोग एवं लोगों के पीछे ईसाई धर्म का चिन्ह एवं एकदम मध्य में ।

नृत्य का अभ्यास कर रहे हैं जो कि देख के हम कह सकते हैं कि यह तस्वीर किसी डांस अकेडमी का है।

यह तस्वीर देख के हम केल कह सकते हैं कि यह --

जो शायद बच्चो को स्कूल छोड़ने या स्कूल से घर छोड़ने जा रही है।

श्री राम जानकी मंदिर यह तस्वीर हिंदू धर्म के देवी देवता --